ले पार्ट में कन्वर्ट करता है।

सभी बालू को गिला करके पोहचाने का काम चल रहा है।

यहाँ पर एक बस है पिली रंग की जिसपे विज्ञान केंद्र स्कूल बस लिखा हुआ है।

ये एक बाजार की तस्वीर है जहाँ पर--

देखने से ये एक नौरात्र का आयोजित --

पंडित की पोशाक मे है।

और जो देवी देवताओं की मूर्ति है यहाँ पर--

आदमी और ढेर सारे बच्चे दिखाई पड़ रहे है।

ये एक मकान की तस्वीर है जिसके सामने --

दुकान है जिसपे कुछ चिप्स लटके पड़े हैं।

थोड़ी गन्दी दिखाई पड़ रही है।

जहाँ पर ऊपर टोप्सी लिखा हुआ है।

कैरम बोर्ड दिखाई पड़ रहा है।